बहुतही बड़ा मैदान है मैदान मे लाल कलर के मिट्ठी नज़र आ रही यहा पे बच्चों के झूल लगे हुए है और यहा पे तीन घर दिखाई दे रहा है।

बहुतही बड़ी नदी दिख रही है नदी के उपर एक ब्रिज बना है ब्रिज के ऊपर बहुत सारे पिल्लर नीचे पिल्लर लगे हुए है एक ब्रिज के साइड मे एक बहुत ही बड़ा खंबा लगा जिसमे बहुत सारे वायर लगे हुए है और यहा पे छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे है।

यहा पे एक घर है घर दो फ्लोअर का दिख रहा है उपर गॅलरी बनी हुई नज़र आ रही है घर के बाहर कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे है एक आदमी लूँगी पहन के खड़ा है और यहा पे एक स्विमिंग पूल बना हुआ स्विमिंग पूल मे साइडसे जो शॉवर निकलता हुआ जा रहा है और--

अ यहा पे एक बॅग रखा गया हरे कलर का पाणी का बोट्ल रखा गया और छोटे छोटे निले कलर के डब्ब --

तथा भी एक ट्रक खड़ा हुआ है और बहुत सारे गाड़ी खड़ी हुई नीचे जमीन पे बहुत सारे बालू है बहुत सारे लकडी के टुकड़े गिरे हुए है।

खाने पीने का सारा सामान यह दुकान मे बहोत ही भरा पूरा सामान अलग दुकान लग रहा है जो बहोत ही अच्छा लग--

और यहा से एक बहुत बडा खेत दिख रहा है खेत के साइड मे एक नीले कलर का पत्रा लगा हुआ है बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है नीले कलर के पत्रे से और बहुत बड़ा खंबा लगा है जिसमे लाइट लगी हुई है और वायर लगा हुआ है एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है और केले का पेड़ यहा पे लगा हुआ नजर आ--